लोग है जोकी कुर्सी पे बैठे हुए है और एक बंदा है जो खड़ा हुआ है यहां दो ए_सी भी लगे हुए हैं।

कोई यहां पर कार्यक्रम हो रहा है। जिसके अंदर एक बंदा है जो माइक के अंदर कुछ बोल रहा है।

उसके पीछे पीछे एक ब्लैक गाड़ी आ रही है और यहां पे है कि मुझे लग रहा है कि --

ये शटर बंद है अभी बैंक बंद लग रही है इधर यह बजाज फाइनेंसर का बोर्ड लगा --

ऐसे लग रहा है की बस चलने वाली है तमिल लोग चढ़ रहे है कुछ महिलाएं है जो कि बस के पास होकर जा रही है जिनके हाथ मे बैग है।

ये कोई यहां पर आर्ट गैलरी है जिसका नाम करणी कृपा आर्ट गैलरी और यहां पे हिमांशु स्टेरशनरी एंड --

दो गाड़ी खड़ी हुई है एक वैन है जो के आगे से पता नहीं इसके क्या कीचड़ वगैरह कुछ लगा हुआ है एक आगे अल्टो गाड़ी --

यह देखिए यह किसी स्कूल का चित्र है जहां पर कुछ बच्चे है जो कि कुछ प्रैक्टिकल कर रहे है।

ये देखिए यहां यहां लिखा हुआ पास में भी पतंजली स्टोर है --

शर्ट रखे हुए है पीछे कुछ मूर्तियां भी लगी हुई है और ये सब कपड़े हैंगर में टंगे हुए हैं यहां पर--

ये देखिए ये केयर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है गंगा शहर रोड बीकानेर --

यहां एक बाल्टी रखी हुई है बीच में यहां एक --

करवा रहे है। ये देखो कितनी यहां पे धूप है। पेट्रोल पंप पे पीछे की साइड एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।